सीलिंग का रंग सफेद है नीचे जमीन पर भी कई सारे डब्बे रखे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा हॉल है।

इस रूम में कई सारे कंबल है ऊपर लाइट जल रहा है।

नीचे एक टेबल और एक कुर्सी भी है चेयर पे कई कपड़े रखे हैं।

यह कई सारे बेंच व डेस्क हैं।

बगल में दो खिड़कियां हैं जिनमें से धूप का रौशनी आ रहा है।

इस पूरे हॉल का रंग हल्का पीला और लाल सफेद है।

सामने एक टेबल है टेबल के ऊपर हाथ से बनाए हुए कई सारे आदमी व औरते हैं।

एक इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है इस पूरे रूम के दीवाल का रंग हरा है रूम में लाइटे जल रही।

जिनका रंग सिल्वर रेड एंड ग्रे है उन सब के सीट का रंग काला और भूरा है।

इसमें कई सारे रैक हैं रैक पर कई अलग अलग तरह के सामान रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा रैक है रैक पर कई सारे सामान रखे हैं।